हमे यहाँ पर एक और व्यक्ति दिखाई दे रहा है। बड़ा सा मिरर भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं देखने में यह सलून अच्छा है।

एक बेकरी का दृश्य है यहाँ पर हमें कुछ केक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यह केक हमें फ्रूट केक नज़र आ रहे हैं।

पिक्चर में हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम एक फुहारा देख पा रहे हैं जिससे पानी बहुत ही तेजी के साथ बह रहा है हम यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग रंग के पेड़-पौधे भी देख पा रहे--।